एक कार और एक रिक्शा भी खड़ा हुआ है।

और उस दीवाल के पास दो नारियल के बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं।

यहां पर कई सारी गाड़ियां आ और जा रही हैं।

सामने की और खिड़कियां और जीने दिख रहे हैं।

जहां पर कुछ महिलाएं पैसे गिनती हुई दिख रही है।

एक गुलाब लाल और दूसरा गुलाब पीले कलर का है।